एक शॉप है जिसमें बहुत सा सामान रखा हुआ है जैसे तेल क्रीम शैम्पू बहुत चीज़ें रखी हुई हैं।

पे चट्टान बना हुआ है जिस पे पानी बह रहा है पानी सफ़ेद रंग का है आसमान भी सफेद रंग का है।

सर पे मटके रखे हुए हैं और चार आदमी आपस में बाते कर रहे हैं। यहाँ पर पेड़ भी बना हुआ है | सीनरी भूरी रंग की है।

आसपास नदी है। यहां पे आसमान नी सफेद रंग का है और पानी भी सफेद है। यहां पर बोहोत से घर भी बने हुए हैं और पेड़ पौधे भी हैं।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

खेलने के लिए स्टैंड लगे हुए हैं। बच्चे टीम बना रहे हैं। यहां पर बहुत बच्चे खड़े हैं। यहां पर एक स्कूल भी है जो काफी बड़ा है।

कुछ पीले और कुछ हरे रंग के भी हैं। नीचे गमले भी रखे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य हैं।

यहां पर एक दुकान भी है। यहां पर एक पाइप है। पर यहां पर एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। यहां पर सजावट भी की गई --

यहाँ पे दो पेड़ लगे हैं जो सूखे है अ यहाँ पे एक और पेड़ है जो ह बहोत ही बड़ा है। यहाँ पे एक जीने भी बने हुए हैं पास में एक जाल भी लगी हुई है।

यह एक मॉल है जिसमें बहोत से कपड़े लगे हुए हैं| जैसे साड़ी ब्लाउज शर्ट पैन्ट सभी चीजे हैं|